एक दुकान पे एक अंकल खड़े हुए है एक पर्सन चाय पी रहा है दो पर्सन बैठे हुए है तीन पे चार पिंक कलर की बॉटलस रखी है एक स्टील का गिलास रखा है और दो कांच में रखे है।

जिसने बैग लटकाया हुआ हैं वो दिख रहा है और लाइट के बायर्स दिख रहे हैं बहुत सारे इसके ऊपर एक व्हाइट कलर कि बिल्डिंग और बनी हुई हैं ।